इस मैदान के साइड साइड में बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बामे चेस्ट फ्रीज़र लिखा हुआ है।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

घर का कलर पीला है।

बहुत सारे चेयर भी लगे हुए हैं जो चेयर स्टील का नजर आए रहा है।

इसमें लकड़ी का काउंटर बना हुआ है और बहुत सारे सब्जी और फल रखा हुआ है।

इस बैंक के बाहर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यह का कलर ब्ल्यू है।

उसमें भी बुक रखा हुआ है।